और इसके आगे बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

अप्सरा आ इस पार्लर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह रेड कलर का पेंट हो रहा है इसके आगे गमले रखे हुए हैं।

पहाड़ पर बहुत अच्छी हरियाली हो रही है यह आमेर का दृश्य है यह बीच में एक सड़क है।

इसके बहुत दूर बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी है इसके किनारे पे एक खंभा भी लगा हुआ है।